यह एक कप है जिसमें चाय रखी हुई है ग्रीन और वाइट कलर की है दूर में एक घर भी है और बहुत बहुत सारा पेड़-पौधे भी है नारियल का पेड़ है बहुत सारा पेड़ है और दूर में उम पहाड़ भी दिख रहा है ब्‍लू कलर की आसमान भी दिख रहें हैं।

यहाँ एक डी.सी.पी. है और मिट्टी खोद रहा है बहुत सारे लोहे के खम्बे हैं वहाँ वहाँ पे एक भी घर भी है ब्लू कलर के और बहुत सारे मिट्टी भी है जो की बहुत अच्छा लग रहा है।

यहाँ एक बहुत बड़ा जंगल जो की बहुत हरा-भरा है दो पेड़ भी है बहुत सारे पेड़ दिख रहा है और एक बाइक भी है वाइट कलर के और ब्लैक कलर के हैं और कुछ चट्टानें भी है यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यह एक कपड़ा का मॉल है बहुत सारे कपड़े हैं कुर्ती है टी-शर्ट है बहुत सारे अलग-अलग तरह के कपड़े है व्‍हाईट कलर से पूरा मॉल हैं।

यहाँ पे बहुत बड़ा मछली का दुकान है।

एक औरत मछली बेच रही है और एक --

जो उसकी बोतल बहुत सारा ग्रीन कलर के --

येलो कलर के पिंक कलर के व्हाइट कलर के --

यह एक पेट्रोल पंप है जिसमें बहुत सारा गाड़ी --